पेट्रोल पंप की बगल के इमारत का रंग नीला अथवा लाल हैं।

इस तस्वीर मे कुछ ईटे पड़ी हुई हैं।

मस्जिद का रंग सफ़ेद हरा और नीला है।

मुर्तियाँ रखी हुई हैं जो अर्द चंद्र के आकर में रखी गई हैं।

तीनो पुतलो ने वस्त्र पहने हुए हैं।

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई गई है सड़क के ऊपर मोटर साइकिलें खड़े हुए हैं।